डांस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से बैलून से डेकोरेट किया हुआ है और सब लड़कियाँ नाच रही है यहाँ पे लगता है कोई फंक्शन है और पीछे तिरंगा एक तिरंगा है।

ये एक रेस्टुरेंट है जो ये रेस्टुरेंट के अंदर एक तावा एक ढेर सारा टेबुल रखा हुआ है और टेबुल के ऊपर एक तावा है जिसमें एक टेस्टी सा ये --

खिंचवा रहा है रेड कलर का बैग टांगे हुए है येलो कलर टी-शर्ट पहने हुए है बाकि लोग अपना अपना ये मसाज करवा रहे हैं और ऊपर में सीलिंग में लाइट लगा हुआ है वाइट कलर का ढेर सारा बहुत अच्छा लग रहा है।

ये एक मछली हाट है जहाँ पे सबलोग अपना ये सबलोग अपना मछली ले बेच के रख कर व्यपार कर रहे है।

ये एक पेट्रोल पंप है एक बड़ा पेट्रोल पंप जहाँ पे तीन टंकी लगी हुई है दो बस लगी हुई है ।